पास में कुछ बड़ा-बड़ा बुक स्टोर दिख रहा है इधर रोज बहुत भीड़ होता है।

इधर पे एक रेस्टोरेंट दिख रहा है। रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है। रेस्टोरेंट में बहोत सारे चेयर टेबिल है। उ --

बाउंडरी की पास कुछ लोग खड़ा है। सामने एक बिल्डिंग दिख रहा है। बिल्डिंग की छाँद में बहोत सारे लोग खड़ा है।

बहोत सारे पेड़ भी आसपास है। एक बिल्डिंग भी दिख रहा है।

बच्चों के सामने एक महिला टीचर खड़ा है।

कुछ लेमन हैं कोरिएंडर लीव्स हैं बनाना हैं कैरट हैं लेमन हैं अनियन हैं।

इधर एक पार्क दिख रहा है पार्क में बोहोत सारे स्लीप्स है छोटा-छोटा हाट दिख रहा है एक लड़का खड़ा है।

इधर पे एक पॉन्ड दिख रहा है। पॉन्ड बहुत बड़ा है। पॉन्ड की पार में एक रास्ता दिख रहा है। रास्ता में एक बास एक ट्राक जा रहा है।

दूड़ में एक एयर कूलर भी दिख रहा है।

में रोज बहोत सारे लड़के नमाज पड़ने के लिए आता है मस्जिद के सामने एक रास्ता दिख रहा है।

ये एक फूल मार्केट है। इधर में बोहोत सारी दुकान दिख रहा है। इस दुकान में बोहोत सारे माला झूल रहा है।